मुझे यहाँ पर एक बड़ा सा मैंदान दिखाई दे रहा है जिसमे एक एकलौता सा झुला रखा हुआ है या प।

सामने की तरह रेल्वे पैनल दिखाई दे रहा है। बोहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है। ऊपर आसमान दिखाई दे रहा --

कुछ मछलियां नीचे की तरफ लेटाल कर रखी गई हैं। कुछ लोग खड़े हुए हैं।

एक घर दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारे पटरी लगाए गए हैं और उस घर की शेटरिंग हो रही है।